इस फ़ोटो मे एक द्फ़्तर दिखाई दे रहा है जिसमे एक बहोत सारे कार्य कक्ष है कार्यालय के बाहर एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है कुछ अलमारी भी यहा पर दिखाई दे रही है लाइट लगे हुए है।

एक लेपटोप यहाँ पर रखा गया है कुछ लोग बैठा हुए हैं ध्यान कर रहे हैं गुबारों का रंग केसरिया हरा और सफ़ेद हैं।